बहुत ही साफ़-सुथरी लाइट जलते हुए दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे लोहे का फैन जैसे लगा हुआ कुछ दिखाई दे रहा है ये मुझे स्लेटी कलर का दिखाई दे रहा है।

सूर्य भी ढ़लता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे बड़े-बड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहें हैं और ऊंचे ऊंचे से पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

गमले पर मुझे बहुत सारे --

लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे पे मुझे बहुत सारे पेड़ और घर बने दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंगे इमारत बने हुई दिखाई दे रही है पीछे पे मुझे बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है उसी के नीचे मुझे बहुत सारे लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

एक मुझे क्रीम कलर का एक स्टूल रखा भी हुआ दिखाई दे रहा है उसके साइड पर मुझे माइक रखा हुआ भी दिखाई दे रहा हैं।

अंदर की मुझे सामने की दीवाल कांच की लगी दिखाई दे रही है साइड में मुझे वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

जो कि अलग-अलग गाड़ियाँ हैं यहाँ पे मुझे एक आदमी एक हाथ पे बैग लेते हुए जाता दिखाई दे रहा है जिन्होंने वाइट कलर की शर्ट पहना है।

यह दुकाने मुझे टिन के दिखाई दे रहीं हैं यहां पे कुछ लोग बैठे और आते-जाते हुए --

और मुझे पीछे सूर्य ढलता हुआ दिखाई दे रहा है।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

और सामने मिरर पे वो सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे ड्रेसिंग पे बोहोत सारे सामान रखे हुए भी दिखाई दे रहे हैं नीचे मुझे --

मछलियां रखी हुई दिखाई दे रही है दो प्लेट मछलियां रखी हुई दिखाई दे रही है।

नीचे जो वाइट कलर के बॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं जो की मछलियों से भरे हुए --